यह एक होंडा गाड़ी का शोरूम हैं जो बहुत सुंन्दर दिख रहे है जिसमे कार कार बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं।

अह जिसमे एक औरत है जो पानी डाल रही है गार्डन --